यहां पे सामने दरवाजा लगा हुआ है।

बोतल भी रखी हुई है।

यहां पे एक बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर फूल लगे हुए हैं।

यहां पे सामने एक शीशे का गेट है।

पीछे भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं।

उसने नीचे पैंट पहन रखी है।

यहां पे ऊपर लाइट लगी हुई है।

पे पेंटिंग लगी हुई है।

इनके ऊपर टीने और यहां पे साइड में छोटे-छोटे जंगले हैं।

एक पंख लगा हुआ है।

अंदर का रंग भी हुआ है।